यह एक चित्र है। एक चित्र में बहोत बड़ा सा गार्डन नजर आ रहा है। जिसमें सब खाना खाते हुए दिख रहे है।

सामने व्हाइट कलर का गेट भी है।